ए.टी.एम. की तस्वीर नजर आ रही है स्टेट बैंक उपरेम एस.बी.आई. बैंक है ये और इसके बहार कि तरफ उप में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाए दे रहा है इस एस.बी.आई. बैंक ए.टी.एम. के आगे की ओर।

और चारो और लाल रिबन से बनाया गया पोस्टर नज़र आ रहा है और काफी अच्छी तस्वीर ये दिखाई दे रही है और ये किसी स्कूल की तस्वीर दिख रही है।